एक बच्चा बाल कटवा रहा है | एक नाई बाल काट रहा है | नीले कलर की है चद्दर ओढ़े हुए बैठा हुआ है | सामने गुब्बारा लगा हुआ है और चद्दर ओढ़े पीछे काली चादर टंगी हुई है नी हरे रंग की दी --

यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें नजर आ रही है जोकि एक रेस्टॉरेन्ट टाइप का है। यहाँ पर ऊपर दीवार सामने डिज़ाइन ऊपर बल्ब --